और बाउंड्री वगैरह हो रखी है।

और यहां पे लंच डिनर वगैरा लगा हुआ है।

और यहां पे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ वॉकिंग कर रहे हैं।

ये टिकट घर काउंटर है और यहां पे कुछ पोस्ट ऑफिस के पार्सल वगैरह पड़े हैं ट्रे पड़ी है।

साइकिल का गोदाम सा लग रहा है ऊपर लाइट जल रही हैं पेंट हो रखा है घर में अच्छे से।

कुछ की सेटिंग चल रही है कुछ बंदे खड़े हैं यहां पे।

देखिये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है साइड में गाड़ी खड़ी है पार्किंग एरिया है दो पिलर है उसके ऊपर--

गुलाब के फूल्स है उनके उपर हल्का हल्का पानी मार रखा है रेड फ्लॉवर्स बहोत प्यारे लग रहे है उसके पीछे येलो फ्लॉवर्स हैं।

और सामने वो बिल्डिंग की जाल दिखाई दे रही हैं।

छत पे लाइट्स लग रखी हैं और एक नाक पकड़ रखी है अपनी--

और कपड़े यहां पे हैंगर्स टू हैंगर्स में टंगे हुए हैं कई तरह के हैं पीले नीले हरे काले पीले--

डब्बे कटिंग के बॉक्स बना रखे हैं स्पीकर के।

लकड़ी का बुरादा फैला पड़ा है और वहां प बहोत मोटी मोटी लकड़ी पड़ी है और एक बंदे का हाथ दिख रहा है।

एक मंदिर है यहां पे काफी लोग आ रखे हैं कुछ बैठे हुए हैं कुछ दर्शन कर रहे--

कहीं से निकाल रखी है कटिंग हो रखी है और सामने वो स्कूल सा दिख रहा है और उसकी बाहर की बोंड्री कर रखी है।

ये एक बिजली घर है जिसमें कई सारे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं कुछ ऑन है कुछ बंद है एक बंदा है उसकी देखभाल के लिए।

यह एक घर है ये कुछ डब्बे पैकिंग करके रखे हुए हैं कुछ सर्कल टाइप का रोल करके रखा हुआ है साइड में टेबल रखा है उसके ऊपर बॉटल रखी है।

ऊपर से और ये साइड से धूप सी आ रही है पर्दा लगा हुआ है।